ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

इसके बाहर काफी लोग खड़े हैं।

ट्रक में रख रही है ये बॉक्स --

सामने गेट में कुछ थैले रखे हुए हैं।

ऊपर इसके ब्लू कलर का बोर्ड भी--

यह खेत की तस्वीर है।

ए काफी सारे पैसे कमरों के बाहर खड़े हैं।